यहाँ देखो यह रेल की पटरी हुई हैं। यहां पर कुछ आदमी भी घूम रही हैं।

गेट और ऊपर के एक जंगला भी है।

यहाँ देखिए यह एक घर है इसके आगे दो कार रखी हुई हैं इधर मोटरसाइकिल भी है वहाँ एक दुकान भी है।

और इधर देखिये एक घर है उसके अंदर एक गेट भी गया हुआ है उसके आगे एक वाल्टी रखी हुई है।

यह देखो यह एक घर है और इधर एक रेल की पटली है।

उधर भी ओर उधर कुछ हुई है।

उधर कुछ किरेट्स भी लग रही हैं | ये एक कवरे से में बंद धरे हुए हैं |

यह देखो यह पानी भरा हुआ है इसमे कुछ पक्षी भी तैर रही हैं। इसमें कुछ फूल भी सा नजर आ रहा है इधर-उधर कुछ पानी दिखाई दे रहा है।

उधर कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे हैं | इधर कुछ टावर पुल भी दिखाई --